और ये मेन रोड पर भी है तो आप यहाँ पर आके सामान खरीद सकते हैं।

वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रह --

ये जगह देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हे ।

यहाँ पर चेस का जो है एं फर्श बिछाया गया है जो --

खुब बड़ी बोहोत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर आप जरूर आइये।

ये जगह देखने में बोहोत ज्यादा अच्छी लग रही है और ये मोर बोहोत ज्यादा ब्यूटीफुल --

यहाँ पर एक ब्रेवेर्ज़ द कॉफ़ी बार के नाम से एक बॉक्स रखा हुआ है।

वॉक करते हुए जो जाते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक रूम के अन्दर का नजारा है।

पिज़्ज़ा की बर्गर की दुकान है।

दुकान किराने की दुकान का व्यू है जहाँ पर की एक भीम युपीआई का --